पेड़ के साथ में ही वहां से गुजरने का रास्ता है।

यह एक दुकान नजर आ रही है जिसमें बड़ी-बड़ी चांदी की कुछ चीजें रखी हुई है।

कॉलेज के आसपास बहोत सी हरियाली भी नजर आ रही है।

इस चित्र में एक मार्केट नजर आ रहा है।

ये कुछ परफॉर्मेंस दे रहे हैं।

कुछ लोग बैंक से बाहर निकल रहे हैं।

ये पूरा ऑफिस सफेद रंग का नजर आ रहा है।

ये शॉप एक वेडिंग में नजर आ रही है यहीं साथ में इसके नीचे जाने का रास्ता नजर आ रहा है।

इस तस्वीर में एक म्यूजिक सीखने की जगह नजर आ रही है।

एक फैमिली और कुछ कपल्स बैठे नजर आ रहे--

और इन्हीं में कुछ टमाटर हैं जो कि खराब हो चुके हैं।

टेबल्स के सामने जीने बने हुए हैं।

जिस पर कुछ सामान रखा हुआ हैं।

उसके वॉल्स पर फ्रेम्स लगे नजर आ रहे हैं।

जिसके आसपास बहुत से घने पेड़--

जिनमें से कुछ आलू अच्छे नजर आ रहे हैं और कुछ खराब नजर आ रहे हैं।

इस तस्वीर में एक ढाबा नजर आ रहा है।

कई तरह की शॉप्स नजर आ रही है।

बोर्ड लगा हुआ दिख रहा है।

दो लड़के खड़े हुए नजर आ रहे।

इसकी बाउंड्री सफेद और लाल रंग की दिख रही है।

और नीचे फर्श पे घास नजर आ रही है।